और इसमें काम चल रहा है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

अउर हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं अउर एक लाइट का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

इस पर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

यह एक घर है घर पर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

यह एक स्कूल है स्कूल पर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

और एक बोर्ड भी है और गेट भी दिखाई दे रहा है।

अऊर तरह तरह के केमिकल रखे हुए हैं।

और जिन पर पूजन कार्य चल रहा है जहां पर बहुत सी महिलाएं पूजा कर रही हैं।

यह एक बहुत सुंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है।

अउर सामने जमीन पर कुछ कार्य चल रहा है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

क्लासरूम के अंदर बहुत से छोटे छोटे बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं।

और कमरे के अंदर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।